आगे नहीं दिख रहे हैं ।

ये एक मेले का सीन है जिसमे अभी कोई भीड़ नहीं है और सामने एक बहुत ही बड़ा झूला लगा हुआ है और इधर भी रेल गाड़ी सायद लगा हुआ है और इधर एक खजूर का पेड़ है बहुत लम्बा --